और यहाँ पर एक प्लेम भी खड़े हुए है जो कि--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी नीले कलर की जैकेट पहने हुए है काले कलर की पैंट --

की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर चर्च है और यहाँ जिसकी बिल्डिंग --

पिले और वाइट मे हैं यहाँ रंग है।

सूर्य भी दिखाई दे रहा हैं जिसकी रैशनिया पड़ रही है और यहाँ पे लोग पानी में है।

और यहाँ पर हार्दिक शुभ कामनाये भी है और यहाँ पे बहोत लोगो की तस्वीर भी लगी हुई है पोस्टर में--

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही हु यहाँ पे बहोत सारे लोग है बोरी उठाते हुए दिखाई दे रहे है बोरी का रंग वाइट रंग का है।

बटंडे से बंधी है और यहाँ पर पिले रंग की--

जैसे की मै यहाँ देख पा रही हु एक बड़ी सी बिलांडिंग है जिसमे का रंग वाइट रंग में है और यहाँ पे बहोत से दरवाजे भी है और यहाँ पे स्टील का दरवाजा भी लगा है जिसका रंग स्लेटी रंग का है।

और यहाँ पर दो मोर के पुतले भी है जो की नीले रंग के मोर--

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पे सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र लिखा हुआ है जो कि --

जैसे की मै यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर लो एक अंकल चेयर मे बैठे हुए है जिसका रंग चेयर का रंग --

और यहाँ पर एक मै खाली--

और पीछे बहोत सारी बिलडिंगे बनी हुई है जिन जो की रंग-बिरंगी पिली ऑरेंज हरी--

पेन्ट भी पहने है यहाँ पर बहोत सारे कागज है वाइट रंग के--

है जो कि और यहाँ पे गलास भी है इमेज भी भूरे रंग की है और कुर्सियां भी पिले रंग की है।

जेसा की मे देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए है झूले का रंग पीला जीने --

और यहाँ पे नीले रंग के नीले कलर का भी--

और ये हरे-हरे रंग के पेड़ भी लगे है यहाँ पे पिले कलर का पोस्टर --

काउंटर भी बने हुए है काउंटर वाइट रंग का है और ऊपर शीशे भी लगे हुए है।

बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है यहाँ पे जूस की बोतले और स अ ररर --

बहोत सारे बड़े-बड़े खम्बे लगे हुए है और टावर भी है और तारे भी पड़ी हुई है।